मुझे लग रहा है ये कोई लाइब्रेरी है सामने मुझे एक ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।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

बैंक दिखाई दे रहा है जिसके आगे कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही है कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे है और लोहे के बनी हुई जालियां दिखाई दे रही है।

घर दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार रेड क्लरों में बनी हुई है और पास में मुझे एक लोह का दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसके ब्लैक पेंट किया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे सामने की तरफ एक लोह की बनी हुई खिड़की दिखाई दे रही कुछ ईंटों की बनी हुई दीवारें भी दिखाई दे रही है और घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ मेला जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें छोटी छोटी बच्चों के खेलने वाली गाड़ियां दिखाई दे रही है।

और कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइटों का डो डेकोरेशन दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी की बनी हुई टेबले दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है और कुछ ब्लैक कलर की कुर्सीयां दिखाई दे रही हैं।

और उसके दीवारों पे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है एक ए_सी दिखाई दे रही है।

होटल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक भी दिखाई दे रही है इसके बाहर कुछ मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है।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

पास में कुछ मुझे खंभे दिखाई दे रहे हैं और इसकी रेलिंग हैं जो लॉक की बनी हुई है और इसके आगे कुछ --

इस तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो गेट के सामने कुछ सेल्फी ले रहा है इसके गले में गमछा भी डाला हुआ है और ब्लैक शर्ट पहनी हुई है।

कुछ छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं और इनके पास कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है जिसमें छोटे छोटे कंकर भी हैं।